नमस्कार गेटिंग स्टार्टेड विथ for loop के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप इंडेंटेशन के साथ पाइथॉन में कोड लिखने फोर लूप का उपयोग करने range फंक्शन का उपयोग करने पाइथॉन इंटरप्रिटर में ब्लॉक्स लिखने इपिथॉन इंटरप्रिटर में ब्लॉक्स लिखने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल की शुरूआत से पहले हम आप को गेटिंग स्टार्टेड विथ लिस्ट्स पर ट्यूटोरियल देखने की सलाह देते हैं
पाइथॉन में व्हाइट स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है ब्लॉक्स देखने में अलग अलग होते हैं
चार स्पेसेज का उपयोग करके कोड को इंडेंट करना अच्छा अभ्यास है
जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं ब्लॉक ब एक आंतरिक ब्लॉक है जिसे 4 स्पेसेज से इंडेंट किया गया है
ब्लॉक ब के बाद ब्लॉक आ में अगला स्टेटमेंट अन्य ब्लॉक आ स्टेटमेंट के सामान इंडेंटेशन से शुरू होता है
इपिथॉन हाइफेन पाइलैब की सहायता से इपिथॉन इंटरप्रिटर शुरू कीजिये अब हम फोर लूप देखते हैं
यहाँ हम एक फोर लूप लिखेंगे जो दिए हुए अंको की सूची में पुनरावृतियाँ करेगा और प्रत्येक संख्या का वर्गमूल बताएगा
अंक हैं 1369 7225 3364 7056 5625 729 7056 576 2916 इस समस्या के लिए हमें पहले अंको की एक सूची बनानी होगी और फिर सूची पर पुनरावृति करनी होगी और इसमें प्रत्येक एलिमेंट के वर्गमूल को ज्ञात करना होगा
और इंटरप्रिटर पर टाइप करने के बजाय एक स्क्रिप्ट तैयार करें
अपने टेक्स्ट एडिटर को खोलें और स्लाइड पर दिखाए गए कोड को टाइप करें
अब टर्मिनल पर जाएँ और स्क्रिप्ट को रुन करें
टर्मिनल में स्क्रिप्ट को चलाने के लिए परसेंटेज रुन स्पेस हाइफेन आई स्पेस लिस्ट अंडरस्कोर रूट्स डॉट पाय टाइप करें
तो यह आसान है
हमने सूची में element दर element पर पुनरावृति की और फिर एलिमेंट का उपयोग गणना के लिए किया
ध्यान दें यहाँ हमने 2 वेरिएबल्स वेरिएबल संख्याओं का इस्तेमाल किया है
पहली लिस्ट और अन्य ईच वेरिएबल है जो फोर लूप के प्रत्येक साइकल में विचाराधीन लिस्ट का एलिमेंट है
वेरिएबल्स के नाम आप स्वयं चुन सकते हैं
ध्यान दीजिये फोर स्टेटमेंट के बाद वाली लाइन्स को 4 स्पेसेज का उपयोग करके इंडेंट किया है
अर्थात लाइन फोर लूप का हिस्सा है
और यह कोड का ब्लॉक है हालाँकि यह ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है
साथ ही चौथी लाइन या फोर ब्लॉक के तुरंत बाद वाली लाइन इंडेंट नहीं है
इसका मतलब है कि यह फोर लूप का हिस्सा नहीं है और इसके बाद की लाइन्स फोर लूप के स्कोप में नहीं हैं
इसलिए प्रत्येक ब्लॉक इंडेंटेशन लेबल द्वारा अलग अलग किया है और वह पाइथॉन में white स्पेसेज की महत्ता दर्शाता है
अब लिस्ट में संख्याओं का वर्गमूल प्रिंट करें
इस बार इपिथॉन इंटरप्रिटर इसे सही करें
एक लिस्ट बनाते हैं
आप देखेंगे कि जैसे ही आप enter के दबाते हैं फोर स्टेटमेंट के बाद प्रॉम्प्ट चार डॉट्स में बदल जाता है और कर्सर चार डॉट्स के बाद नहीं है लेकिन यहाँ डॉट्स से फोर स्पेसेज हैं
नंबर्स इस इक्वल टो स्क्वैर ब्रैकेट्स में 1369 7225 3364 7056 5625 729 7056 576 2916 फिर टाइप करें फोर ईच इन नंबर्स कोलोन अतः आप 4 डॉट्स देख सकते हैं
कृपया ध्यान दें इपिथॉन स्वतः ही ब्लॉक को इंडेंट कर देता है
4 डॉट्स दर्शाते हैं कि आप ब्लॉक के भीतर हैं
अब शेषfor लूप टाइप करें
टाइप करें प्रिंट डबल कोट्स में स्क्वेयर रूट ओएफ कॉमा ईच कॉमा फिर प्रिंट डबल कोट्स में इस कॉमा स्कॉर्ट ब्रैकेट्स में ईच अब हम ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट्स पूर्ण कर चुके हैं और फिर भी इंटरप्रिटर हमें 4 डॉट्स दिखा रहा है जिसका अर्थ है कि आप अभी भी ब्लॉक में हैं
ब्लॉक से बाहर आने के लिए बिना कुछ प्रविष्ट किए रिटर्न या enter की को लगातार दो बार दबाएँ
यह सूची में प्रत्येक संख्या के वर्गमूल को प्रिंट करता है जिसे फोर लूप में निष्पादित किया गया था
एक से लेकर 10 तक हर संख्या का घन पता करें
लेकिन इस बार पाइथॉन इंटरप्रिटर के वैनिला वर्जन का इस्तेमाल करें
अपने टर्मिनल में पाइथॉन कमांड जारी करके पाइथॉन इंटरप्रिटर के वैनिला वर्जन को शुरू करें
टाइप करें फोर आई इन rangeब्रैकेट में 1 कॉमा 11 कोलोन और enter दबाएँ
एक बार enter दबाएँ
और हम देखेंगे कि इस बार यह फोर डॉट्स दर्शा रहा है लेकिन कर्सर डॉट्स करीब है अतः हमें ब्लॉक को इंडेंट करना होगा
पाइथॉन इंटरप्रिटर का वैनिला वर्जन कोड को स्वतः ही इंडेंट नहीं करता है
यहाँ पर 4 स्पेस प्रविष्ट करें और फिर निम्न टाइप करें
फिर टाइप करें आई कॉमा डबल कोट्स में क्यूब इस कॉमा आई स्टार स्टार 3
enter दबाएँ अब जब हम enter दबाते हैं हम अभी तक फोर डॉट्स देखते हैं
ब्लॉक से बहार आने के लिए एक बार फिर enter दबाएँ
ठीक है अतः हमने यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ देखी वो है पाइथॉन इंटरप्रिटर और ब्लॉक्स निर्दिष्ट करने के लिए इपिथॉन इंटरप्रिटर का उपयोग कैसे करें
लेकिन जब हम गुणनफल तालिका बना रहे थे हमने एक नए रंगे फंक्शन का उपयोग किया
रंगे फंक्शन पाइथॉन का एक आतंरिक फंक्शन है जिसका उपयोग शुरूआती संख्या से आखिरी संख्या तक के पूर्णांक प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है
ध्यान दें कि आखिरी संख्या जो आपने निर्दिष्ट की है इस सूची में सम्मिलित नहीं होगी
1 से 50 के बीच सभी विषम संख्याएँ प्रिंट करें
इसे अपने इपिथॉन इंटरप्रिटर के आसान उपयोग के लिए करें
समस्या को हम केवल range फंक्शन के उपयोग से हल कर सकते हैं
यह इस तरह हल की जा सकती है कमांड लाइन में टाइप करें इपिथॉन और enter दबाएँ
इस बार हमने range फंक्शन में 3 पैरामीटरों पास किये हैं अब तक हम केवल 2 पैरामीटरों ही पास कर रहे थे
पहले दो पैरामीटरों दोनोँ स्थितियो में सामान हैं
पहला पैरामीटर अनुक्रम की पहली संख्या है दूसरा पैरामीटर अनुक्रम की आखिरी संख्या है
ध्यान दें कि अनुक्रम आखिरी संख्या को सम्मिलित नहीं करता है
तीसरा पैरामीटर क्रम में अंतर बताने के लिए है
यहाँ हमने 2 निर्दिष्ट किया है जिसका अर्थ है हम 1 के अन्तराल पर स्कीप कर रहे हैं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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
पाइथॉन में फोर लूप का उपयोग करके ब्लॉक बनाना 2कोड के ब्लॉक को इंडेंट करना 3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
पाइथॉन में इंडेंटेशन जरूरी नहीं है
क्या ये सही है या गलत160
फोर लूप का उपयोग करके 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करने के लिए कोड लिखें
आउटपुट क्या होगा रंगे ब्रैकेट्स में 1 कॉमा 5 उत्तर हैं 1
गलत पाइथॉन में इंडेंटेशन आवश्यक है
हम फोर लूप निम्न तरीके से उपयोग करते हैं य इस इक्वल टो 1 फोर एक्स इन range121 य स्टार इस इक्वल टो एक्स फिर प्रिंट य 3रंगे ब्रैकेट्स में 15 1 से 4 तक इंटिजर्स की सूची बनायेगा
जो है 1234 स्क्वैर ब्रैकेट में
आशा है आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने इसे उपयोगी पाया होगा
धन्यवाद160